एंड पीछे बहुत सारी बुक्स रखी हुई है एंड पेंस पेंसिल्स स्केच कलर्स और पेपर्स रखे हुए हैं।

दी हुई है और ट्रैकिंग के लिए एक अच्छा पाथ भी है।

कुछ बना हुआ है वो भी मनमोहक लग रहा है।

और ये बहुत अच्छा है और यहां पर तारों का गुच्छा दी--

अं सोफा भी रखा हुआ है और एक रिसेप्शन लिस्ट के लिए जगह भी रखी हुई है वहां पे दो टेबिल हैं और ब्लैक कलर की एड़ी एल_ई_डी भी लगी हुई है।

लगे हुए हैं जो बहुत हरे और--

और बहोत सारे बच्चे अपना खेल खेल रहे हैं बास्केट बॉल भी खेली जा रही है क्रिकेट भी खेला जा रहा है कुछ लोग जॉगिंग भी कर रहे हैं और कुछ लोग बातें भी कर रहे --

ये किसी कार रिपेयरिंग स्टोर का दृश्य है जहां पर हाइड्रॉलिक्स पंप के द्वारा किसी स्विफ्ट कार को उठाकर उसको ठीक किया जा रहा है।